इंडियन पेट्रोल पंप बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कि अभी सिर्फ रूम बना हुआ है और सामने कोई ऑइल के--

यहाँ मुझे एक पार्क दिख रहा हैं पार्क में एक अह गेंडा का स्टॅचू बना हुवा हैं जिस स्टॅचू पे --

बड़ासा गेट दिख रहा है सीमेंट का जो ऑरेंज कलर का हैं जिसमें लिखा है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपका इस जगह में स्वागत है।

टपरे के अंदर और बहोत से चिप्स कुरकुरे राजश्री गुटका इस टाइप की चीजे उसमे टंगी हुई है प्लस सामने--

तीन बाइक खड़ी हैं बगल मैं दो लड़के खडे हुए हैं उनके बगल मे--

और पीछे बाउंड्रीयाँ हैं क्रीम कलर की प्लस पीछे उसके पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े पेड़ हैं।

और नाइट का टाइम है प्लस लाइट जली हुई है ग्राउंड की बड़ी दो थे--

मुझे यहां एक छोटी सी दुकान दिख रही है जहां कुरकुरे चिप्स फेयर लवली मैगी पास्ता मसाला टाफी बिस्कुट --

मुझे एक यह दुकान के अंदर का सीन दिख रहा है कारखाने के अंदर का जहां ट्रक के--

मुझे यहां नजारा दिख रहा है पर्वत का।

और देखने में कि अह कोई ऑफिस लग रहा है या कोई सरकारी दफ्तर लग रहा है।